इस चित्र में जे_सी_पी दिख रही है।

लाल लाइट और हरी लाइट दिख रही है।

इस चित्र में समाधि निकाल रहे हैं।

ईंटें दिखाई दे रहीं हैं मी गिट्टी पड़ी हैं आसमान में बादल हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

छोटी-छोटी घास दिख रही है।

इस चित्र मेंएयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाल पर्दा है नीचे माइक रखा है।

कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पत्थर रखे हुए हैं बड़े-बड़े --

जमीन पर घास लगी है।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

पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे--

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिख रहा हैं।

गमला दिख रहा है जिसमें घास दिख रही है।

इस चित्र में सब्जी मंडी दिख रही है।

इस चित्र में एक शोरूम दिख रहा है।

इस चित्र मे एक सड़क नजर आ रही है।

इस चित्र में ए_टी_एम दिख रहा है।

आसमान में बादल है घटा छाई है।

इस चित्र में सड़क दिख रही है।

कुछ कार ऑटो दिख रहें हैं।